और सजावट भी हो रखी है और एक विंडो है इसपे पर्दा लगा हुआ है और पीछे गेट है ऊपर सजावट हो रही है जिसमे कुछ ब्लू कलर के स्टार है कुछ येल --